पेड़ पौधे है हरी भरी पत्तिया है।

ऊपर ऊँचाई पर हवा में लटकती हुई दीवार है। उस पर खिड़की बनी है।

मैदान है। मैदान में हरियाली है। पीछे बड़े सी बिल्डिंग है। मकान है।

एक आदमी जा रहा है सूखी घास पड़ी है।

पौधे लगे हैं रंग- बिरंगी लाइट लगी है। एक आदमी खड़ा है।

पेड़ का नीचे मोटा तना है सुखी लकड़ी गिरी हुई है।

सूखी घास है पत्थर है बड़े वाले पेड़ हैं ।

टॉप बना है लाइटे जल रही हैं पेड़-पौधे हैं।

बर्तन रखा हुआ है नीचे सामने एक घोड़ा खड़ा है।